यहाँ पर एक हॉल में सलून सलून की दुकान है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाल काट रहा है।

और ऊपर हरी हरी धुप भी दिखाई दे रही हरियाली जैसी।

कुछ बड़े-बड़े पत्थरों की सफ़ेद कलर की चट्टानें दिखाई दे रही हैं बड़े-बड़े पेड़ हैं नीचे की साइड एक --

जैसी पड़ी दिखाई दे रही हैं। ये मछवारे जैसे के मछली पकड़-पकड़ कर रख रहे हों।

और कुछ मशीने रखी हुई हैं जैसे कुछ परिक्षण करने के लिए यूज़ किया --

यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पंडित जी बैठे हुए हैं और कुछ घर के सदस्य बैठे हैं।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

यहाँ पर हमें एक बड़ी- सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो बिल्डिंग में बहुत सारी लाइटें लगी हैं।

एक सफ़ेद कलर की एक करिया कलर की दो बसे दिखाई दे रही हैं।

तिकोन में कुछ पुल जैसा बना हुआ है। कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं और रेत गिट्टी पड़ी दिखाई दे रही है बोहोत सारी।